चैयर पे बैठा हुआ हैं और एक आदमी खड़े हुए हैं और नीचे बहुत सारे चूहो को देख पा रहा हूँ।

जहाँ पे बहुत से आदमी इस डैम पे स्नान करते हुए देखे जा रहे है।